दुकान में कुछ आदमी भी है और ऊपर बल्ब जला हुआ है।

यहां पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और यहां काफी सुंदर तरह से लेक में सजा करके भी समान रखा हुआ है बहोत सारा टांग करके रखा हुआ है।

काफी सारे पौधे भी है और काफी बड़े बड़े पेड़ भी है।

यह सैलून का चित्र है इस सैलून में यहां पे एक बड़ा शीशा भी है शीशा के इधर चेयर भी लगा हुआ है।

यहां लाइट भी जल रहा है।

यह सब्जी मंडी का चित्र है यहां पर काफी सारे लोग तरह तरह की सब्जियां ला करके बेच रहे हैं।

यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इंडियन ऑयल ।

इस चित्र में यह आदमी है जो थ्री टेबल मे बैठा हुआ है।

घड़ी भी लगाया हुआ है घड़ी के नीचे खिड़की भी है जिसपे पर्दा भी लगाया हुआ है।

इधर एक बड़ी गली भी है और उधर ऊपर तार भी दिख रहा है।

ग्राउंड के उधर बड़ी बड़ी इमारतें भी है वहां पर काफी सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं।

यहां पर एक स्टेज बनाया हुआ है स्टेज को काफी सुंदर तरह से सजाया हुआ है।

एक ए_सी भी लगा हुआ हैं उधर लाइट भी लगाया हुआ हैं ।

यहाँ पूरा पीछे पर्दा भी लगाया हुआ है।

इस चित्र में ये बड़ा रूम दिख रहा है और इस रूम पूरा बैलून से सजाया हुआ है।

यहां पर काफी सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं चेयर भी लगाया हुआ है।

पौधे भी हैं तालाब का पानी काफ़ी गन्दा दिख रहा है।

लाइट भी लगाया हुआ है और साइड साइड में रेलिंग भी लगाया हुआ है।

बड़ा बोड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय और उनकी तस्वीर भी लगाई गई है।

मंदिर में पूरा कलर भी किया हुआ है और मंदिर के नीचे एक बड़ा गेट भी लगा हुआ है।

यहां पर काफी सारे लोग भी है जो कि चेयर में बैठे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे कृष्णा जी का मूर्ति दिखाई दे रहा है जो कि बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है ।